यह एक मिर्ची है और यह मिर्ची हरे कलर का है यह मिर्ची देखने में भी काफी सुन्दर और खाने में भी बहुत अच्छा है ।

इसे खाने के लिए लोग काफी दूर-दूर से आते है और यहाँ बहुत सस्ता मिठाई भी मिलता है और यह मिठाई बहुत बढ़िया भी स्वादिष्ठ खाने में है।

और तार खाने में बहुत ही स्वादिष्ठ और बहुत ही बढ़िया लगता है और यह खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ --

यह दुकान में बहुत सारे कुरकुरे और अदर सामान मिलते हैं | यह दुकान बहुत प्रसिद्ध और फेमस है |

बहुत आदमी आता है यह घर बहुत सुन्दर दिखने मे है यह घर दूर दूर से लोग रहने के लिए आते हैं | यह किसी दूसरे का घर नहीं है मुकेश अम्बानी का घर है पिछले जन्म --

दिल्ली बॉम्बे गुजरात से और यह मशीन काफी आराम दे और सुंदर दे इस मशीन में आप योगा मतलब --

झारखण्ड में नहीं लेकिन बिहार में स्थित है यह बहुत बढ़ियाँ और सुन्दर है इसे दूर-दूर से लोग इसे देखने के लिए और सीखने के लिए आते है ।